यहां पे देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं।

यहां पर पुराने पुराने चीजे मिलता है।

और कोई भी कस्टमर नहीं आया यहां पे ये दुकान पे अभी तक।

और पानी का बोतल रखने का डस्टबिन है मतलब या पे खाली या पानी का बोतल रख सकता है।

बहुत सारे पत्थर है यहां पे।

गाड़ी भी पार्किंग पे है बाइक और लोग भी आ रही है जा रही है ऐसे।

फोर जी वाला सिम यहां पे बेचता है।

दृश्य है एक सीनरी सीनरी भी साइट पे है दो टॉप पर लगा हुआ है।

यहां पे जो इंसान है उसका फेस ब्लर है और वो पत्थर के ऊपर है।

यहां पर एक एस_बी_आई बैंक है।

यहां पे एक फोन है ऊपर एक जन्ना जैसा है।

सब लोग माता के दर्शन करने के लिए आया है लाइन लाइन करके सब लोग एक साथ--

बहुत बड़ा है ऑफिस भी।

यह देख सकते हो यहां पे ये मतलब रीवर जैसा ही रीवर तो नहीं है ये एक फोन है।

और पेंसिल वगैरह शावल सब कुछ कर के जो जो सामान होता है वो भी मिलता है यहां पे--

और एक अंकल यहाँ पे बैठ के न्यूज पेपर पढ़ रही है।

यहां पर ए_टी_एम है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी है ए_टी_एम ।

ए वाला ए_टी_एम एस_बी_आई बैंक का है।

और डिजाइन किया है वो व्हीलचेयर वाला भी जा सकता है।

साइड पे एक दुकान मतलब दुकान भी बोल सकता है।

करंट का बोर्ड स्विच का बोर्ड मतलब जो लाइट वगैरा ऑन करने के लिए वो भी है।

दुकान वगैरह भी है गाड़ी भी पार्किंग पे है।

इवनिंग टाइम का फोटो क्लिक किया है।

बादल भी पूरा पर्पल या पिंक ये से हो गया।

लेफ्ट साइड पे दो ऑटो रुकी हुई है।

बहोत सुंदर है डिजाइन करके बनाया।

ये यहाँ पर शादी हो रही है।

यहां पे सिर्फ लड़कों का ही चप्पल मिलता है।

सब तो यहां पे बहुत सारा चप्पल है और एक साउंड बॉक्स भी है।

टीचर लोग आ के योगा करवा रही है बच्चे लोगों को।

यहाँ पे तीन लोग है एक लड़की में मिडिल पर और दो लड़का है।

और यहां पे देख सकते हो व्यू भी बहुत सुंदर है।

ये सब एक दुकान है।

ऊपर जो साइन बोर्ड है वहां पे लिखा है शॉपि करके।

देख सकते हो बड़ा अक्षर से लिखा हुआ है शॉपी कर के--